इनमें बड़ा सा पत्थर दिखाई पड़ रहा है वहां पे उसके साईड में कुछ घास भी उगी दिख रही है सामने बहुत सारी घास दिख रही है यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ सूखा दिखाई पड़ रहा है उसपे एक छोटी सी चिड़िया भी बेठी हुई है।

एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो तीन खंड में बनी हुई है इसके नीचे वाले हिस्से में सामने एक आदमी खड़ा हुवा है वहाँ पे एक डब्बा बोक्स रखा दिखाई पड़ रहा है साईड में एक स्टेच्यू भी खड़ा हुवा है।

यहां सामने एक छोटी सी दिवार बनी है बीच में कुछ घास जैसी लगी हुई दिखाई पड़ रही है साइड में गमले भी रखे हुए है यहां एक बड़ी सी सेडो दिख रही है यहां पे कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई पड़ रही है पीछे दिवार दिख रही है उसपे डिज़ाइन दिख रही है।

यहाँ सामने बहुत सारी रैक दिखाई पड़ रही है सभी रैक में सामान रखा हुआ है यहाँ बच्चो के खेलने का गेम रखा हुआ है।

यहाँ सामने पहाड़ दिखाय पड रहा है जो की ब्लेक कलर में ग्रीन कलर में दिख रहा है यहा पे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ भी दिखाय पड़ सामने पानी बहता दिख रहा है जो की ब्लेक कलर में दिख रहा है पानी के बीच में कुछ पोधे उगे हुये दिखाय पड रहे है जो की ग्रीन कलर दिखाय पड रहे है सामने कुछ बड़े भी पेड़ दिखाय पड रहे हैं।

सामने कुछ गोल सा बना हुवा है पीछे कुछ मकान दिख रहा है जो की वाईट कलर के है सामने एक मकान की टंकी दिखायी पड़ रही है जो की लाल रंग की दिख रही है वाह पे बिजली का खभा भी दिखाय पड़ रहा है।